यहां काउंटर पर मोबिल और तेल रखा हुआ है।

नीचे नीले रंग का एक काउंटर भी बना हुआ है।

और पिछे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं सफेद रंग का दुकान है।

और यहां एक हॉस्पिटल का बोर्ड भी लगा हुआ है।

मकान में खिड़कियां भी लगी हुई है और यहां काफी भीड़ भी दिख रही है।

साथ में यहां पर एक लड़का भी खड़ा हुआ है।

ये एक पार्क है जो रेस्टो बंदर की तरह है।

और देखने से ये एक पुराना किला लग रहा है।

पीले रंग के हैं गुब्बारे लगे हुए हैं।

एक डिस्प्ले बोर्ड भी बना है जिस पर काफी सारे नंबर लिखे हुएं--

और यहां काफी भीड़ है पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

ऐसा लग रहा है जैसे पीछे जंगल हो और पीछे बहोत सारे खेत भी दिख रहे हैं।